मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार मौसम बदल रहा है
इस बार गर्मी भी बहुत रही
लेकिन अच्छा हुआ कि वर्षा ऋतु समय पर अपने नक्शेक़दम पर आगे बढ़ रही है
देश के कई भागों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है
बारिश के बाद ठण्डी हवाओं में पिछले दिनों की गर्मी से राहत का अनुभव रहा है
और हम सबने देखा है कि जीवन में कितनी ही आपाधापी हो कितना ही तनाव हो व्यक्तिगत जीवन हो सार्वजनिक जीवन हो बारिश का आगमन ही हमारी मनःस्थिति को भी बदल देता है
आज भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लासपूर्वक देशवासी मनाते हैं
अब तो विश्व के भी कुछ भागों में भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा का उत्सव सम्पन्न होता है
और भगवान जगन्नाथ जी के साथ देश का ग़रीब जुड़ा हुआ है
जिन लोगों ने डॉ0 बाबा साहेब आम्बेडकर का अध्ययन किया होगा उन्होंने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ जी का मन्दिर और उसकी परंपराओं की वो बड़ी तारीफ़ करते थे क्योंकि उसमें सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता अंतर्निहित थे
भगवान जगन्नाथ ग़रीबों के देवता हैं
और बहुत कम लोगों को पता होगा अंग्रेज़ी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता
और इस जगरनॉट के डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है
और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ की इस यात्रा को अपनेअपने तरीक़े से किस प्रकार से माहात्म्य स्वीकार किया है
भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामनायें देता हूँ और भगवान जगन्नाथ जी के श्रीचरणों में प्रणाम भी करता हूँ
भारत की विविधता ये इसकी विशेषता भी है भारत की विविधता ये भारत की शक्ति भी है
रमज़ान का पवित्र महीना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया
अब ईद का त्योहार है
ईदउलफ़ितर के इस अवसर पर मेरी तरफ़ से सबको ईद की बहुतबहुत शुभकामनायें
रमज़ान महीना पुण्य दान का महीना है ख़ुशियों को बाँटने का महीना है और जितनी खुशियाँ बाँटते हैं उतनी खुशियाँ बढ़ती हैं
आइए हम सब मिलकर के इन पवित्र उत्सवों से प्रेरणा लेकर के ख़ुशियों के ख़ज़ानों को बाँटते चलें देश को आगे बढ़ाते चलें
रमज़ान के इस पवित्र महीने में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मुबारकपुर गाँव की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आयी
क़रीब साढ़े तीन हज़ार हमारे मुसलमान भाईबहनों के परिवार वहाँ उस छोटे से गाँव में बसते हैं एक प्रकार से ज़्यादा आबादी हमारे मुस्लिम परिवार के भाइयोंबहनों की है
इस रमज़ान के अन्दर गाँववालों ने मिलकर के शौचालय बनाने का निर्णय लिया
और इस व्यक्तिगत शौचालय के अन्दर सरकार की तरफ़ से भी सहायता मिलती है और उस सहायता की राशि क़रीब 17 लाख रुपये उनको दी गई
आपको जानकर के सुखद आश्चर्य भी होगा आनंद होगा
रमज़ान के इस पवित्र महीने में सभी मुसलमान भाइयोंबहनों ने सरकार को ये 17 लाख वापस लौटा दिए
और ये कहा कि हम हमारा शौचालय हमारे परिश्रम से हमारे पैसों से बनाएँगे
ये 17 लाख रुपये आप गाँव की अन्य सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए
मैं मुबारकपुर के सभी ग्रामजनों को रमज़ान के इस पवित्र अवसर को समाज की भलाई के अवसर में पलटने के लिए बधाई देता हूँ
उनकी एकएक चीज़ भी बड़ी ही प्रेरक है
और सबसे बड़ी बात है उन्होंने मुबारकपुर को खुले में शौच से मुक्त कर दिया
हम जानते हैं कि हमारे देश में तीन प्रदेश ऐसे हैं सिक्किम हिमाचल और केरल वो पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं
इस सप्ताह उत्तराखण्ड और हरियाणा भी ओडीएफ घोषित हुए
मैं इन पाँच राज्यों के प्रशासन को शासन को और जनताजनार्दन को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ इस कार्य को परिपूर्ण करने के लिये
हम भलीभाँति जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में समाज के जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है
अगर हमारी हैंडव्राइटिंग ख़राब है अगर उसको ठीक करना है तो लंबे अरसे तक बहुत जागरूक रहकर के प्रयास करना पड़ता है
तब जाकर के शरीर की मन की आदत बदलती है
स्वच्छता का भी विषय ऐसा ही है
ऐसी बुरी आदतें हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गई हैं
हमारी आदतों का हिस्सा बन गई हैं
इससे मुक्ति पाने के लिये अविरत रूप से हमें प्रयास करना ही पड़ेगा
हर किसी का ध्यान आकर्षित करना ही पड़ेगा
अच्छी प्रेरक घटनाओं का बारबार स्मरण भी करना पड़ेगा
और मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता ये सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है
ये जन समाज का जनसामान्य का एक आन्दोलन बनता चला जा रहा है
और शासन में बैठे हुए लोग भी जब जनभागीदारी से इस काम को आगे बढाते हैं तो कितनी ताक़त बढ़ जाती है
पिछले दिनों एक बहुत ही उत्तम घटना मेरे ध्यान में आई जो मैं आपके सामने ज़रूर कहना चाहूँगा
ये घटना है आन्ध्र प्रदेश के विजयनगरम ज़िले की
वहाँ के प्रशासन ने जनभागीदारी से एक बड़ा काम हाथ में लिया
10 मार्च सुबह 6 बजे से लेकर के 14 मार्च सुबह 10 बजे तक
100 घंटे का नोन स्टॉप अभियान
और लक्ष्य क्या था एक सौ घंटे में 71 ग्राम पंचायतों में दस हज़ार घरेलू शौचालय बनाना
और मेरे प्यारे देशवासियो आप जानकर के ख़ुश हो जाएँगे कि जनताजनार्दन ने और शासन ने मिलकर के 100 घंटे में दस हज़ार शौचालय बनाने का काम सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया
71 गाँव ओडीएफ हो गए
मैं शासन में बैठे हुए लोगों को सरकारी अधिकारियों को और विजयनगरम ज़िले के उन गाँव के नागरिकों को बहुतबहुत बधाई देता हूँ कि आपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए बड़ा प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है
इन दिनों मन की बात में लगातार मुझे जनताजनार्दन की तरफ़ से सुझाव आते रहते हैं
NarendraModiApp पर आते रहते हैं MyGovइन पर आते हैं चिट्ठियों से आते हैं आकाशवाणी पर आते हैं
श्रीमान प्रकाश त्रिपाठी ने एमरजेंसी को याद करते हुए लिखा है कि 25 जून को लोकतंत्र के इतिहास में एक काला कालखंड के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है
प्रकाश त्रिपाठी जी की लोकतंत्र के प्रति ये जागरूकता सराहनीय है और लोकतंत्र एक व्यवस्था ही है ऐसा नहीं है वो एक संस्कार भी है
इटर्नल विजिलेंस इस थे प्राइस ओएफ लिबर्टी लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता ज़रूरी होती है और इसलिये लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है
1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है
कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है
एक प्रकार से देश को जेलखाने में बदल दिया गया था
विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था
जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था
न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उस भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी
अख़बारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था
आज के पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी लोकतंत्र में काम करने वाले लोग उस काले कालखंड को बारबार स्मरण करते हुए लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहने चाहिए
उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जेल में थे
जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनःस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है
झुलसाता जेठ मास
शरद चाँदनी उदास
झुलसाता जेठ मास
शरद चाँदनी उदास
सिसकी भरते सावन का
अंतर्घट रीत गया
एक बरस बीत गया
एक बरस बीत गया
सीखचों में सिमटा जग
किंतु विकल प्राण विहग
सीखचों में सिमटा जग
किंतु विकल प्राण विहग
धरती से अम्बर तक
धरती से अम्बर तक
गूंज मुक्ति गीत गया
एक बरस बीत गया
एक बरस बीत गया
पथ निहारते नयन
गिनते दिन पलछिन
पथ निहारते नयन
गिनते दिन पलछिन
लौट कभी आएगा
लौट कभी आएगा
मन का जो मीत गया
एक बरस बीत गया
लोकतंत्र के प्रेमियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और भारत जैसा देश इतना बड़ा विशाल देश जब मौका मिला तो भारत के जनजन की रगरग में लोकतंत्र कैसा व्याप्त है चुनाव के माध्यम से उस ताक़त का प्रदर्शन कर दिया
जनजन की रगरग में फैला हुआ ये लोकतंत्र का भाव ये हमारी अमर विरासत है
इस विरासत को हमें और सशक्त करना है
मेरे प्यारे देशवासियो हर हिंदुस्तानी आज विश्व में सिर ऊँचा करकर के गौरव महसूस कर रहा है
21 जून 2017 पूरा विश्व योगमय हो गया
पानी से पर्वत तक लोगों ने सवेरेसवेरे सूरज की किरणों का स्वागत योग के माध्यम से किया
कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा
ऐसा नहीं है कि योग पहले होता नहीं था लेकिन आज जब योग के धागे में बंध गए हैं योग विश्व को जोड़ने का कारण बन गया है
दुनिया के क़रीबक़रीब सभी देशों ने योग के इस अवसर को अपना अवसर बना दिया
चीन में थे ग्रेट वॉल ओएफ चीना उस पर लोगों ने योग का अभ्यास किया तो पेरू में वर्ल्ड हेरिटेज सिते माचू पिच्चू पर समुद्र तल से 2400 मीटर ऊपर लोगों ने योग किया
फ़्रांस में एफिल टॉवर के साये में लोगों ने योग किया
यूएई में अबू धाबी में 4000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योग किया
अफगानिस्तान में हेरात में इंडिया अफगान फ्रेंडशिप दम सलमा बाँध पर योग कर के भारत की दोस्ती को एक नया आयाम दिया
सिंगापुर जैसे छोटे से स्थान पर 70 स्थानों पर कार्यक्रम हुए और सप्ताह भर का उन्होंने एक अभियान चलाया है
उन ने अंतराष्ट्रीय योग दिवस के 10 स्टैम्प्स निकाले
उन 10 स्टैम्प्स को रिलीज किया
उन हेडक्वार्टर में योगा सेशन विथ योगा मास्टर्स का आयोजन किया गया
उन के स्टाफ दुनिया के डिप्लोमैट्स हर कोई इसमें शरीक़ हुआ
इस बार फिर एक बार योग ने विश्व रिकॉर्ड का भी काम किया
गुजरात में अहमदाबाद में क़रीबक़रीब 55 हज़ार लोगों ने एक साथ योग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया
मुझे भी लखनऊ में योग के कार्यक्रम में शरीक़ होने का अवसर मिला
लेकिन पहली बार मुझे बारिश में योग करने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ
हमारे सैनिकों ने जहाँ माइनस 20 25 40 डिग्री टेम्परेचर होता है उस सियाचिन में भी योग किया
हमारे आर्मेड फोर्सेस हों बीएसएफ हो आईटीबीपी हो सीआरपीएफ हो सीआईएसएफ हो हर कोई अपनी ड्यूटी के साथसाथ योग को अपना हिस्सा बना दिया है
इस योग दिवस पर मैंने कहा था कि तीन पीढ़ी क्योंकि ये तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस था तो मैंने कहा था कि परिवार की तीन पीढ़ियाँ एक साथ योग करते हुए उसकी फ़ोटो शेयर कीजिये
कुछ टीवी चैनल ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था
मुझे इस पर काफ़ी फ़ोटो मिले उसमें से कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ NarendraModiApp पर कंपाइल करके रखे गए हैं
जिस प्रकार से पूरे विश्व में योग की चर्चा हो रही है उसमें एक बात अच्छी उभर कर के आ रही है कि योग से आज की जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो फिटनेस से अब वेलनेस की ओर जाने की दिशा में क़दम रख रही है और उनको लग रहा है कि फिटनेस का महत्व है ही है लेकिन वेलनेस के लिए योग उत्तम मार्ग है
रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सिर मैं डॉक्टर अनिल सोनारा अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ
सर मेरा एक सवाल है कि रिसेंटली केरल में हमने आपको सुना था कि डिफरेंटडिफरेंट प्लेसेस पे जो बुकेट एएस आ गिफ्ट हम देते हैं उसकी जगह किंड ओएफ गुड बुक्स हमको देनी चाहिए एएस आ memento
इस चीज़ का आपने शुरुआत गुजरात में अपने कार्यकाल में भी करवाया था सर लेकिन अभी इन रिसेंट डेज हमें ये ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है
सो कैन वे डीओ सोमथिंग हम क्या इस चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं सकते जिससे ये देशव्यापी तौर पे इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो सके सर
पिछले दिनों मुझे एक बहुत ही मेरे प्रिय कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला
केरल में अच्छा कार्यक्रम चलता है कुछ वर्षों से प
पानिकर फाउंडेशन के द्वारा चलता है और लोगों को किताबें पढ़ने की आदत बने लोग किताब पढ़ने की ओर जागरूक हों इसलिये रीडिंग डे रीडिंग मोंथ सेलिब्रेशन किया जाता है
तो मुझे उसके शुभारम्भ में जाने का मौका मिला
और वहाँ मुझे ये भी बताया गया कि हम बुकेट नहीं बुक देते हैं
मुझे अच्छा लगा
अब मुझे भी जो चीज़ मेरे ध्यान से हट गई थी उसका पुनः स्मरण हो गया
क्योंकि जब मैं गुजरात में था तो मैंने सरकार में एक परंपरा बनाई थी कि हम बुकेट नहीं देंगे बुक देंगे या तो हाथरुमाल हैंडकरचीफ उसी से स्वागत करेंगे
और खादी का हैंडकरचीफ ताकि खादी को भी बढ़ावा मिले
जब तक मैं गुजरात में था हम सब की आदत बन गई थी लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी वो आदत छूट गई थी
लेकिन केरल गया तो फिर से एक बार वो जागरूक हो गई
और मैंने तो अभी सरकार में फिर से नीचे सूचना देना भी शुरू कर दिया है
हम भी धीरेधीरे एक स्वभाव बना सकते हैं
और बुकेट की आयुष बहुत कम होती है
एक बार हाथ में लिया फिर छोड़ देते हैं
लेकिन अगर बुक देते हैं तो एक प्रकार से घर का हिस्सा बन जाता है परिवार का हिस्सा बन जाता है
खादी का रुमाल दे कर के भी स्वागत करते हैं तो कितने ग़रीब लोगों को मदद मिलती है
ख़र्चा भी कम हो जाता है और सही रूप से उसका उपयोग भी होता है
और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो ऐसी चीज़ों का कितना ऐतिहासिक मूल्य होता है
मैं गत वर्ष जब उक गया था तो लोंडों में ब्रिटेन की क्वीन क्वीन एलिजाबेथ ने मुझे भोजन पर निमंत्रित किया था
एक मातृसहज वातावरण था
बड़े प्यार से उन्होंने भोजन भी कराया लेकिन बाद में उन्होंने मुझे एक बड़े ही आदर के साथ भावात्मक स्वर में एक छोटासा खादी का और धागे से बुना हुआ एक हैंडकरचीफ दिखाया और उनकी आँखों में चमक थी उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी तो ये हैंडकरचीफ महात्मा गाँधी ने मुझे भेंट में भेजा था शादी की शुभकामना के रूप में
कितने साल हो गए लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने महात्मा गाँधी के द्वारा दिया हुआ ये हैंडकरचीफ संभाल के रखा हुआ है
और मैं गया तो उन्होंने इस बात का बड़ा आनंद था कि वो मुझे वो दिखा रही थीं
और जब मैं देख रहा था तो उनका आग्रह रहा कि नहीं मैं उसको छू कर के देखूँ
महात्मा गाँधी की एक छोटी सी भेंट उनके जीवन का हिस्सा बन गई उनके इतिहास का हिस्सा बन गई
मुझे विश्वास है कि ये आदतें रातोंरात नहीं बदलती हैं और जब कभी ऐसी बात करते हैं तो आलोचना का भी शिकार होना होता है
लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी बातें करते रहनी चाहिए प्रयास करते रहना चाहिए
अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं कहीं जाऊँगा और कोई बुकेट ले के आ जाएगा तो उसको मना कर दूँगा ऐसा तो नहीं कर पाऊँगा
लेकिन फिर भी आलोचना भी होगी लेकिन बात करते रहेंगे तो धीरेधीरे सुधार भी होगा
मेरे प्यारे देशवासियो प्रधानमंत्री के नाते अनेक प्रकार के काम रहते हैं
फ़ाइलों में डूबे रहते हैं लेकिन मैंने मेरे लिये एक आदत विकसित की है कि मुझे जो चिट्ठियाँ आती हैं उसमें से रोजाना कुछ चिट्ठियाँ मैं पढ़ता हूँ और उसके कारण मुझे सामान्य मानव से जुड़ने का एक अवसर मिलता है
भाँतिभाँति की चिट्ठियाँ आती हैं अलगअलग प्रकार के लोग चिट्ठियाँ लिखते हैं
इन दिनों एक ऐसी चिट्ठी मुझे पढ़ने का अवसर मिला मुझे लगता है कि मुझे ज़रूर आपको बताना चाहिए
दूरसुदूर दक्षिण में तमिलनाडु में मदुराई की एक हाउसवाइफ अरुलमोझी सर्वनन उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजी
और चिट्ठी क्या थी उन्होंने लिखा कि मैंने अपने परिवार में बच्चों की पढ़ाई वगैरह के ध्यान में रह के कुछनकुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने की दिशा में सोचा तो परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद हो जाए
तो मैंने मुद्रा योजना से बैंक से पैसे लिए और बाज़ार से कुछ सामान ला करके सप्लाई करने की दिशा में कुछ काम शुरू किया
इतने में मेरे ध्यान में आया कि भारत सरकार ने गवर्नमेंट इमार्केटप्लेस नाम की कोई व्यवस्था खड़ी की है
तो मैंने ढूँढ़ा ये क्या है कुछ लोगों से पूछा
तो मैंने ख़ुद को भी उसमें रजिस्टर करवा दिया
मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ आपको भी मौका मिले तो आप इंटरनेट पर एगेम ई जी ई एम उसको विसित कीजिए
एक बड़ी नयी प्रकार की व्यवस्था है
जो भी सरकार में कोई चीज़ सप्लाई करना चाहता है छोटीछोटी चीज़ें भेजना चाहता है बिजली के बल्ब भेजना चाहता है डस्टबिन भेजना चाहता है झाड़ू भेजना चाहता है चैर भेजना चाहता है टेबल भेजना चाहता है बेचना चाहता है वो उसमें अपना नाम रजिस्टर करवा सकता है
वो क्या क्वालिटी का माल है उसके पास वो उसमें लिखकर के रख सकता है कितने में वो बेचेगा वो लिख सकता है और सरकार के डिपार्टमेंट को कंपल्सरी है कि उन्होंने उस पर विसित करना होगा देखना होगा कि ये सप्लाई करने वाले क्वालिटी कंप्रोमाइज न करते हुए सस्ते में कौन पहुँचाता है
और फिर उसको आर्डर करना होता है
और उसके कारण बिचौलिये ख़त्म हो गए
सारी ट्रांसपेरेंसी आ गई
इंटरफेस नहीं होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सब होता है
तो एगेम के अन्दर जो लोग रजिस्ट्री करवाते हैं सरकार के सभी डिपार्टमेंट उसको देखते रहते हैं
बीच में बिचौलिये नहीं होने के कारण चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं
अब ये अरुलमोझी मैडम ने सरकार की इस वेबसाइट पर वो जोजो सामान दे सकती हैं उसका सारा रजिस्ट्री करवा दी
और मज़ा ये है कि उन्होंने मुझे जो चिट्ठी लिखी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है
उन्होंने लिखा कि एक तो मुझे मुद्रा से पैसे मिल गए मेरा कारोबार शुरू हो गया एगेम के अन्दर मैंने मैं क्या दे सकती हूँ वो सारी सूची रख दी और मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से आर्डर मिला पीएमओ से
अब मेरे लिए भी ये नयी ख़बर थी पीएमओ ने क्या मँगवाया होगा तो उसने लिखा है कि पीएमओ ने मेरे से दो थर्मोस ख़रीदे
और 1600 रुपये का मुझे पेमेंट भी मिल गया
ये है एम्पावरमेंट ये है आंत्रप्रिन्योरशिप को बढ़ावा देने का अवसर
शायद अरुलमोझी जी ने मुझे चिट्ठी न लिखी होती तो मेरा भी शायद इतना ध्यान नहीं गया होता कि एगेम की व्यवस्था से दूरसुदूर एक गृहिणी छोटा सा काम कर रही है उसका माल प्रधानमंत्री कार्यालय तक ख़रीदा जा सकता है
यही देश की ताक़त है
इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है इसमें एम्पावरमेंट भी है इसमें आंत्रप्रिन्योरशिप भी है
गवर्नमेंट इमार्केटप्लेस गेम मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो इस प्रकार से सरकार को अपना माल बेचना चाहते हैं वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें
मैं मानता हूँ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदहारण है ये और इसका लक्ष्य क्या है मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम ईज़ एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी
मेरे प्यारे देशवासियो एक तरफ़ हम योग को लेकर के गर्व करते हैं तो दूसरी तरफ़ हम स्पेस साइंस में हमारी जो सिद्धियाँ हैं उसके लिए भी गर्व कर सकते हैं
और ये ही तो भारत की विशेषता है कि अगर हमारे पैर योग से जुड़े हुए ज़मीन पर हैं तो हमारे सपने दूरदूर आसमानों के उन क्षितिजों को पार करने के लिये भी हैं
पिछले दिनों खेल में भी और विज्ञान में भी भारत ने बहुतकुछ करके दिखाया है
आज भारत केवल धरती पर ही नहीं अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा रहा है
अभी दो दिन पहले इसरो ने Cartosat2 सीरीज सैटेलाइट के साथ 30 नानो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया
और इन सैटेलाइट्स में भारत के अलावा फ्राँस जर्मनी इटली जापान ब्रिटेन अमेरिका ऐसे क़रीबक़रीब 14 देश इसमें शामिल हैं
और भारत के इस नानो सैटेलाइट अभियान से खेती के क्षेत्र में किसानी के काम में प्राकृतिक आपदा के संबंध में काफ़ी कुछ हमें मदद मिलेगी
कुछ दिन पहले इस बात का हम सब को बराबर याद होगा इसरो ने GSAT19 का सफ़ल लॉन्च किया था
और अब तक भारत ने जो सैटेलाइट लॉन्च किये हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा वज़नदार हेवी सैटेलाइट है
और हमारे देश के अख़बारों ने तो इसकी हाथी के वज़नों के साथ तुलना की थी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा काम अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिकों ने किया है
19 जून को मार्स मिशन के एक हज़ार दिन पूरे हुए हैं
आप सबको पता होगा कि जब मार्स मिशन के लिये हम लोग सफलतापूर्वक ओर्बिट में जगह बनाई थी तो ये पूरा मिशन एक 6 महीने की अवधि के लिये था
उसकी लाइफ 6 महीने की थी
लेकिन मुझे ख़ुशी है कि हमारे वैज्ञानिकों के इस प्रयासों की ताक़त ये रही कि 6 महीने तो पार कर दिये एक हज़ार दिन के बाद भी ये हमारा मंगलयान मिशन काम कर रहा है तस्वीरें भेज रहा है जानकारियाँ दे रहा है साइंटिफिक दाता आ रहे हैं तो समय अवधि से भी ज़्यादा अपने आयुष से भी ज़्यादा काम कर रहा है
एक हज़ार दिन पूरा होना हमारी वैज्ञानिक यात्रा के अन्दर हमारी अंतरिक्ष यात्रा के अन्दर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है
इन दिनों स्पोर्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि हमारे युवाओं का रुझान बढ़ता चला जा रहा है
अब ये नज़र आने लगा है कि पढ़ाई के साथसाथ खेलकूद में भी हमारी युवा पीढ़ियों को अपना भविष्य दिखने लगा है और हमारे खिलाड़ियों के कारण उनके पुरुषार्थ के कारण उनकी सिद्धि के कारण देश का भी नाम रोशन होता है
अभी हाल ही में भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया ओपन में जीत दर्ज़ कर देश का मान बढ़ाया है
मैं इस उपलब्धि के लिए उनको और उनके कोच को ह्रदय से बधाई देता हूँ
मुझे कुछ दिन पहले एथलीट पी टी उषा जी के उषा स्कूल ओएफ एथलेटिक्स के सिंथेटिक ट्रैक के उद्घाटन समारोह में जुड़ने का अवसर मिला था
हम खेल को जितना बढ़ावा देंगे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी लेकर आता है
खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है
ओवरॉल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में खेल का माहात्म्य बहुत है
देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है
अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रुचि है तो उनको अवसर देना चाहिए
उनको मैदान में से उठा करके कमरे में बंद करके किताबों के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए
वो पढ़ाई भी करें उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ें लेकिन अगर खेल में उसका सामर्थ्य है रुचि है तो स्कूल कॉलेज परिवार आसपास के लोग हर किसी को उसको बल देना चाहिए प्रोत्साहित करना चाहिए
अगले ओलम्पिक के लिए हर किसी को सपने संजोने चाहिए
फिर एक बार मेरे प्यारे देशवासियो वर्षा ऋतु लगातार उत्सवों का माहौल एक प्रकार से ये कालखंड की अनुभूति ही नयी होती है
मैं फिर एक बार आप सब को शुभकामनायें देते हुए अगले मन की बात के समय फिर कुछ बातें करूँगा